इस पिक्चर मे एक तलाब दिख रहा है। यहा पर नाव दिख रही है जो की ऑरेंज कलर और आसमानी कलर की है और ऊपर भी आसमानी कलर नीचे भी ब्लू कलर है नाव मे और पेड़ रखे है बहोत सारे।

शॉप है शायद बूकों की यहा पर ब्राउन रेड कलर की येल्लो कलर की और ब्लॅक कलर की उनपर कुछ लिखे हुए है बहुत सारी बूकें है और ब्लू कलर की भी बूकें रखी हुई है।

और पेड़ लगे हुए है। नीचे गुफाये सी भी है। और पर्वत सा दिख रहा है। और आसमान भी दिख रहा है। और पानी दिख रहा है अच्छा।

और बूके रखे हुए है कॅमरा लगा हुआ है और नीचे व्हाइट कलर की दीवारहै घर है और बहुत सारे बूके रखी हुई है रेड कलर की एक टेबल रखी--

और यहा पर एक ईटोंका घर दिख रहा है। जो ब्राउन कलर व्हाइट कलर खिड़की लगे हुए है। कमेरा लगा हुआ है। नीचे कार्पेट बिछा हुआ है। पेड़ लगे हुए--

एक लडकी है। यहा पर एक लेडीस बाहर रोड पर बैठी हुई है। और पेड़ लगे हुए है। और आसमान दिख रहा है।